जहाँ पर बहोत सारे पेन रखे गए हैं। कॉपी किताब और बहोत सी चीजें।

साइड में एक हरा कलर का जनरेटर है।

उसके बहोत सारे घर हैं और हरे-भरे बहोत सारे पेड़ हैं।

जो लाल टी-शर्ट और ब्लू जींस पहना हुआ है।

और उसके बगल में बहोत सारे हरे-भरे पेड़ लगाए गए हैं।

और एक सामने की साइड में आम का पेड़ है।

और कुछ बच्चे यहाँ बगल में बैठे हुए हैं।

यह एक तेजा बुक स्टाल नाम का एक छोटा सा दुकान है।

बोहोत सारे दवाइयां धरी गई हैं और ऊपर में एक होम थिएटर लगाया गया।